कंप्यूटर क्लास को देख पा रही हूं जहां पे चार कंप्यूटर लगा हुआ है चार कुर्सी भी है।

और एक टीचर है तीन स्टूडेंट है और--

सामने में बहोत सारे ऑटो वगैरा खड़े हैं एक आदमी प्लेटफार्म के तरफ जा रहा है।

मैं एक बिल्डिंग को देख पा रही हूं जो--